एक क्लास दिखाई दे रही है एक अध्यापक कितने सारे विद्यार्थियों को पढ़ा रहा है कुर्सियां यहां लगी हुई हैं।

ये एक छोटा सा ऑफिस दिखाई दे रहा है जिसकी दीवार पे एक पंख लगा हुआ है ट्यूबलाइट --

हैं एक टेबल पे पानी की बॉटल पड़ी हुई है बैठने के लिए स्टूल लगे--

ये एक लोबिया का शोरूम है जहां अप टू फिफ्टी परसेंट ऑफ --

यह एक जॉकी का शोरूम है। यहां पर बहोत सारे लोग हैं कुर्सियां लगी हुई है।

एक पोस्टर लगा हुआ है जहां शेरा लिखा हुआ है।

एक यहां लड़का खड़ा है जिसने काले रंग का कुर्ता पजामा पहेना है।

शोरूम में कितनी सारी कुर्सियां लगी हुई है सोफा लगा हुआ है छत में बहोत सारी लाइट्स लगी हुई है।